इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

उस वॉल का पिछे पर भी आदमी और कार भी बहुत सारा दिखाई दे रही है।

इस दुकान का अंदर में बहोत सारा मूर्तियां दिखाई दे रहा है।

और यहां में ओ मूर्ति रखने के लिए शीशा से बनाया हुआ है।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

और इस घर का पीछे पर भी एक बड़ा सा घास देख रही है।

और यहां पर दो लाइट पोस्ट भी दिखाई पा रहा है।

और आसमान भी बहोत सुंदर से देख रहा है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा बादल देख रहा है।

जिसका साइड और नीचे में बहुत सारा मूर्ति बनाया हुआ है।

और एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है और साइड में भी एक गाड़ी पार्किंग करके है गैरेज --

और इधर साइड पे भी एक बंबू दिखाई दे रही है।

और यहां पर आसमान भी पूरा ब्लू करके दिख रही है।

पिक्चर पर मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है।

और यहां पे पेट्रोल भराने आने वाला एक बाइक भी रखा हुआ है।

और इंसान लोग भी बहोत सारा दिखाई दे रही है।